यहां पर मुझे कुछ हरे कलर के चारें दिख रहे हैं।

यहां पर मुझे कुछ इंसान खड़े हुए दिख रहे हैं यहां पे मुझे कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे एक रोड नजर आ रही है।

यहां पर मुझे कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे है।

यहां पर मुझे हरे कलर की घास दिखाई दे रही है।

यहां मुझे कुछ बहोत सारी कुर्सियां भी दिखाई दे रही है यहां मुझे एक बैठा हुआ दिख रहा है।

यहां मुझे एक अलमारी का कलर हरा दिख रहा है यहां मुझे एक अलमारी का कलर ऑरेंज दिख रहा है।

यहां मुझे कुछ टाइल्से खड़ी हुई किसी लकड़ी के ऊपर देख रहीं हैं।

यहाँ मुझे तीन लाइट ह पीले कलर कि दिखाई दे रही हैं।